उस पर ब्लैक कलर का पेंट है और नीचे के तरह ब्लू कलर का पेंट है उसके बगल मे एक जाल टाइप का है उसके बगल मे ड्रम टाइप का लगा हुआ है।

ग्रेडियर है वो स्टील का है उसके बगल में एक बेंच पड़ी है जो सिलेटी कलर से पेंट हुई है।

यह एक गली का एरिया है जहाँ पर एक छोटी सी दुकान है उसके ऊपर जो बिल्डिंग है वो वाइट कलर की है उस --

यह एक दुकान है जहाँ पर बहोत सारे फूल टंगे हुए है।

ओर नीचे ब्लू जिन्स पहनी है। उसके बगल मे एक रिक्शा खड़ा हुआ है जिसमें रिक्शे का जो कलर है वो ग्रीन है और उपर से छतरी दी है। उसके बगल मे एक आदमी खड़ा है जो अपने सर पर अंगोछा ड ---

यहाँ एक पंडाल है जहाँ पर बहोत सारी प्रतिमाएँ रखी हुई है और उसके आगे बहोत सारी भीड़ इखट्टा है।

लाइट का जो कलर है वो ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट मे है और गेट पर व्हाइट और ऑरेंज कलर के गुब्बारे लगे हुए है यहां पर कुर्सी पर दो आदमी बैठे हुए है एक आदमी ने ब्लू एंड रेड कलर की--